यह दिखने मे भी काफी सुन्दर और अच्छा है यहाँ एक प्रोग्राम चल रहा है जो बहुत ही अच्छे बच्चो का --

यह इमेज में हमे एक --

खेलने के लिए आते हैं।

फास्ट फूड का दिखाया गया है जहाँ बहोत ही अच्छा --

यहाँ बहोत दूर-दूर से लोग बुक खरीदने के लिए आते है क्यूंकि यहाँ का बुक बहोत ही अच्छा और बहोत ही कम दामों मे मिलता है।

यहाँ कई दूर-दूर से लोग मजे करने के लिए आते है इसके आस-पास बहोत सारे घर भी है।

यहाँ से सुविधा है और यह बहुत बड़ा भी है बहुत सुन्दर भी है ।

यहाँ बहुत दूर-दूर से लोग फोटो भी खींचाने के लिए आते हैं।

यहाँ बहोत दूर-दूर से लोग लेने भी आ --